और गेट के सामने एक लोहे का हैंगर लगा हुआ है पीले और काले रंग मे ओर बगल की दीवार काली दिखाई दे रही है बिजली का खंभा --

इस चित्र मे बड़ा घर देख रहे हैं उसके सामने एक मैदान हैं उसमे एक सफेद दिखाई दे रहा हैं एक--

एक बल्ब दिखाई दे रहा और लाल हरासफेद मे लिखा हुआ है बाकी काली दिखाई दे रही है और अंदर कुछ --

ओर रेल्वे के डब्बे दिखाई दे रहे है गुल जोगिया रंग और काले रंग के पीछे खुला आसमान और छत गुलजोगी रंग की दिखाई दे रही है गुलाबी भी दिखाई दे रही है।

कवर देखाई दे रहा है कुर्सी का जोगिया रंग और दो आदमी बैठे हुए है पीछे दो आदमी दिखाए दे रहे है जमीन साफ दिखाई दे रहा है।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

सामने गैस और लोहे के टेबल दिखाई दे रहे है और उस साइड में बालकनी में आदमी औरत दिखाई दे रहे है एक लाल सीमेंट का खम्बा दिखाई दे रहा है।